यहां से नीचे की ओर पूरी की पूरी शहर नजर आ रहा है जोकि ये शहर बहुत सुंदर सजा हुआ नजर आ रहा है।

इस पार्क के अंदर बहोत सारी हरियाली भी नज़र आ रही है जहां पर घास भूस लगी हुई है और किनारों पे बहुत पेड़ लगाये गये है।

और यहां पर एक छत के ऊपर बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं जिसमें कुछ काटोगे और कुछ फूलों के भी नजर आ रहे हैं।

इस फोटो के अंदर एक सब्जी मंडी नजर आ रही है।

पार्क के अंदर बहुत सारे बच्चे भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इसके बीच में एक पे करने के लिए फोन पे पेटीएम का बारकोड लगाया गया है।

इस फोटो मे अंदर एक बस नजर आ रही है बस को पूरा--

जहां पर एक ए_सी लगा हुआ है और एक टेबल लगी हुई है जहां पर बैठने की कुर्सी लगाई गई है और सामने कि तरफ दो कुर्सियां लगाई गई है।